पिंक कलर की टी-शर्ट पहन रखी है यहां पर एक लेडी भी है जिन्होंने येलो कलर का सूट पहन रखा है।

यहां पर कुछ वाइट कलर की कार है।

ऊपर दो कारे व्हाइट कलर की हैं।

यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है। यहाँ पर एक साइकिल खड़ी हुई है।

इन्होंने ब्लैक कलर की फ्रॉक पैन रखी है पिंक कलर का बैक टांग रखा है।

यहां पर एक चेयर पर एक लड़की बैठी है जिसने लाइट पर्पल कलर का टॉप पहन रखा है।

यहां पर कुछ लाइटें जल रही है।

यहां पर एक बेड पड़ा है।

यहां पर चॉकलेटी कलर का ब्लांकेट रखा हुआ है।

एक एक फैन हुआ हैयहां पर लाइट जल रही है।

ब्राऊन कलर का बेग टांग रखा है।

इसमें ब्लैक कलर का कैप लगा रखा है।

यहां पर कुछ बसे पड़ी हुई है।

यहां बेड पर एक रिमोट रखा हुआ है।